चक्के लगे हुए हैं चक्के काले कलर के हैं और ट्रक लाल कलर का है एक एक सफ़ेद कलर का है।

पेट्रोल पम्प के ऊपर छत बना हुआ है जो की सफ़ेद कलर का है जिसमें लाइट लगी हुई है ऊपर जो की बंद है और पीछे एक घर है जो की पेट्रोल पम्प का है और चारो तरफ कुछ पेड़ पौधे है।

एक रेलवे स्टेशन है जिसमे एक नकली ट्रेन रखा हुआ है एक प्लेटफोर्म के सामने।

ट्रेन के लिए पटरियां लगी हुईं है जो की लोहे की है उनके बिच में सीमेंट की पटियाँ लगी हुई है प्लेट-प्लेटफॉर्म हैं प्लेटफ़ॉर्म में टाइल्स लगी हुई है।

बगल में एक और पटली है जिसमें एक ट्रेन चल रही है ट्रेन हरे कलर की है ऊपर से रेलवे की बहुत सारी तार गई हुई है और चारो साइड हरे भरे पेड़-पौधे दिख रहें है।

चारों तरफ गिट्टी है जोकि काले कलर की दिख रही है एक पटरी मे ट्रेन चल रही है जिसमे एक इंजन लगा है इंजन लाल रंग और सफेद रंग का पैंट हुआ है एक ओवरब्रिज है जो की काफी बड़ा है।

सामने पैड-पौधे है कुछ हरे-भरे है सामने कुछ पानी की भरी हुई नदी है चारों तरफ पहाड दिख रहे है जोके नदी के दोनों और बने हुए है पैड-पौधे काफी घने है जोके हरे भरे दिख रहे हैं।